जैसे में देख रहे है कि आगे बैट्समैन है और पीछे कीपर है।

इसमें काफी अनेको फूल और अनेको रंग कि फूल से सजाया गया है इसमें --

इसमें अनेक गाड़ियाँ दिनभर में आती है और जाती है।

और लोग भी खड़े होके देख रहें हैं।

ये सभी एक लोग बड़े से --

जिसमें अनेंको प्रकार की समान मिलती हैं।

जैसा में देख रहे है कि यह एक शादी का मंडक है जिसमें शादी हो रही है।

उधर से एक लोग तार पकरे हुए हैं इधर पे एक लोग बैठे हुए हैं।

जो गिरने से धोखा भी हो सकता है।

जिसका नाम स्वराज सात सौ पैतीस पी.ई. है।

और एक व्यक्ति पैदल जा रहें हैं जो ऊपर से पन्नीक पहने हुए हैं।

अनेकों प्रकार के बल्लेबाज और बॉलर आते हैं और अपना-अपना प्रदर्शन दिखाते हैं।

जैसे में आप देख रहें हैं कि एक छोटी सी दुकान है।

साइड साइड से पथर ही पथर आ रहे हैं नजर उधर से हरियाली छोटे-मोटे पौधे --